एक नई साइकिल का दुकान दिखाई दे रहा है।

ऊपर में पंखा है ए_सी लगाया गया है और पीछे में लाइट है ।

पीछे में कुछ कैलेंडर और क्रॉस का चिन्ह है।

ऊपर मेल ट्यूब लाइट जल रहा है सामने में कुछ लोग बैठे हैं किताब ले के।

भीतर में एक समाधि है उसके सामने दीवाल पर एक घड़ी है।

इस दृश्य में एक होटल या रेस्टोरेंट का बाहर का सेड दिखाया गया है।

एक दुकान या फैक्ट्री है फैक्ट्री में कुछ लोहे का साइड में सामान रखा गया है।

झूला लगाया गया है जो सेट के अंदर है लाइट का पोस्ट दिखाई दे रहा है।

दो एक लोग यहां बैठे हैं एक खड़े हैं।

इतर मे भी हेल्प लाइन का बोर्ड लगाया गया है।

साइड में कुछ टांगा गया है और एक आदमी बैठे हैं।

इसमें बहुत सारे टेबल और सोफा लगाया गया है।